यह एक घर है यह घर स्किन और पिंक कलर का बना हुआ है।

अंदर की तरफ जाने का रस्ता है।

ये तस्वीर एक कैफे की है यहां कैफे में--

कर रहे है यहां पर जिम की काफी सारी मशीनें भी--

यह दुकान व्हाइट और ग्रीन कलर से बनी हुई हैं।

यहां पर तीन लोग बैठे हुए हैं और यहां पर--

इसके ब्रिज के बीच में एक घर बना हुआ है जो --

यहां पे बाइक और कार पड़ी हुई है कार येलो और डार्क येलो कलर की है।

पर हर थोड़ी थोड़ी दूरी पर एक एक डस्टबिन रखा हुआ है।

यहां पे पुरे ओर की दुकान की सीटें निकली हुई हैं।

और दो दुकानें इसके पास में और है।

सिर्फ पहाड़ ही नजर आ रहे हैं यहां पहाड़ के ऊपर--

काफी सारे लोग बैठे हुए है।